यहाँ पर विद्यार्थी सब बहुत सारा बैठ के रंगोली बना रहा है जैसे लग रहा है छब्बीस जनवरी हो। छबीस जनवरी के लिए सजावट कर रहा है झंडा फहराने के लिए। रंगोली बना रहा है पांच छे बच्चे मिलकर। कोई हरा रंग से कोई लाल रंग से कोई वाइट रंग से बना रहा है।